ये काफी बड़ी तालाब है और इस तालाब के आसपास में झाड़ी है जो की झाड़ी की तरफ से सूरज की रोशनी भी दिख रही है।

काट करके मछली बेचा जा रहा है और ये बाजार काफी पुराना बाजार है और यहाँ पे--